इससे उसी के साथ में कुछ कैटबेरी जैसे कि कीट कैट और डेयरी मिल्क भी दिखाई दे रही है।

बैठने की जगह जैसे सोफा दिख रहा है और कुछ छोटा-छोटा लाइट भी दिख रहा है।

जहां पे एक रेट कारपेट बिछा हुआ है और सामने में भगवान जी का मूरत लगा हुआ है।